टाँगे भी दिखाई दे रहे है बट वहाँ पे बहुत सारे वृक्ष भी लगे दिखाई दे रहे है कुछ लोग भीड़ हैं ना वो नाव मे चढ़ते चढ़ते हुए दिखाई दे रहे है कुछ बच्चे भी बच्चा भी दिखाई दे रहा है फीमेल कोस्को लिए हुए वहाँ पर बहुत अच्छा नजारा--

इंग्लिश में लिखा हुआ है वहाँ पर कुछ बहुत सारे मतलब मेल दिख रहै है स्टाईल में दिख रहे है कुछ ठंड का मौसम लग रहा है ऊपर में जैकिट भी पहने हुए कुछ लाल कलर के कुछ ब्लैक कलर के कुछ पीले कलर के कुछ व्हाइट --

खाली लाल कलर की चेयर भी दिख रही हैं वहाँ पर बहोत पर्दे भी दिख रहे हैं वहाँ पर व्हाइट कलर सा झालार दिख रहा हैं वहाँ बहुत गमले भी रखे हुए दिखाई--

फीमेल भी दिख रहे हैं बोहत बोहत अच्छा नज़ारा लग रहा हैं वहाँ पर कुछ चीज की पूजा चल रही हैं मतलब मालूम नहीं किस व्रत की पूजा चल रही हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं की की किस की प्रार्थना कर रहे हैं मालूम नहीं हैं मुझे--

ए काले माले कोई मेल दिख रहा है बच्चा- सा दिख रहा है मतलब अठारा- उन्नीस साल का लग रहा ओमल मलतब गले में पीला कलर का गम-गमछा भी डाले मतलब लालू-मतलब ब्लैक कलर का कुर्ता भी पहने उसमें मतलब गेटी भी लगा हुआ जो काला कलर कराए उसमें फुब्बारे भी कोई --